और यहाँ एक पानी की बोतल है।

फ़ोन से किसी के साथ बतयाते हुए--

चेयर में बैठ के कुछ लगा रहे हैं।

तीन लाइट भी लगे हुए --

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे है जो--

जिसमें बहुत सारे साइड में --

और यहाँ का --